ये एक स्कूल है इसमें मेहंदी कलर हो रहा है।

ये बच्चे की खिलौने की दुकान है।

यह एक स्कूल है जिसमें तीन टीचर है।

एक कुर्सी धारी है सामने।

जिसपे एक बच्चा खड़ा है और वाइट कलर का वाइट कलर --

ये एक कैश काउंटर है जिसमें सामने एक कुर्सी रखी है।